संतरे और सफेद रंग के कपड़े--

गोरकनाथ नेत्र चिकित्सालए --

और यहां पे देख सकते हो--

और यहां पे देख सकते हो ये यहां पे--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

यहां पे आप देख सकते हो ये बेंच है और यहां पे आप देख सकते हो--

आसमान देख रहा है और यहाँ पे--

चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही--

ये यहां अकेले सब के हो ये दो बाइक देख रहे हैं और एक बाईक पर हेलमेट रखा हुआ है एक--